यह एक जिम है इसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है जीस ने ब्लैक कलर का लोवर पहना है।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

आ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आ जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो माक्स लगाकर बैठा हुआ है।